ब्लू कलर की टिशर्ट और ब्लैक पेन्ट पहनकर बैठकर --

यहाँ तीन बाइक खड़ी है।

एक बाइक ब्लैक कलर की है एक ब्लू कलर की है और एक ग्रे और पर्पल रंग की है ।

यह पिक्चर एक बहोत पुराने घर का है यह घर की दीवारें बहोत पुरानी हैं और स स्काइ ब्लू कलर की है।

यह पिक्चर एक पेट्रोल पम्प का है पेट्रोल पम्प के बाहर एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी है।

एक प्लेटफॉर्म दो में है और एक प्लेटफॉर्म तीन में है।

झाड़ियो से थोड़ी दूर पर एक लेक है। लेक में थोड़ी दूर पर एक पहाड़ --

झाडियां और पेड़ है। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लेख है जो सूख चूका है।

थोड़ी दूर पर काफी पहाड़ और पेड़ हैं।

झाड़ियाँ और पेड़ है जो हरे भरे हैं।

नदी एक पहाड़ से निकल रही है।

दुकान के बगल में एक और दुकान है।

यह पिक्चर में एक आदमी है जो गोल गप्पे बना रहा है।